पीछे ही पर्दे र टंगे हुए हैं जो कि संतरी और काले कलर के हैं।

और पीछे ए_सी लगी हुई है।

जहां पर आदमी खड़े हैं और कुछ महिला भी चल रही है।

यह एक बहुत अच्छा ऑफिस है ऑफिस में एक आदमी मोबाइल चला रहा है।

यह एक बहुत अच्छा जन सेवा केंद्र है।

ये एक बहुत अच्छा रेलगाड़ी का मार्ग है।

और उधर पीले कलर का एक व्यक्ति खड़ा है और उसके पास ही काले कलर की शर्ट हुए--

मच्छी हरे हरे कलर की हैं।

और काउंटर के ऊपर थोड़ी कटोरिया भी रखी हुई है और बगल में ही--

अउर उसके पास ही एक थमला है थमले पर कुछ लगा है अउर उसके पास ही एक लोहे का स्टूल बना हुआ है।

और सभी व्यक्ति खेल की मैदान की ओर देख रहे है।

जो टीन के ऊपर रखी है टीन नीले कलर की है।

और यहां पर बहुत हरियाली है ये बहुत अच्छा है।

और एक पुरुष उसके बगल में है मोबाइल चला रहा है।

यहां पर टेबल भी रखी है और एक स्टूल रखा है और हरे पत्तियां का एक बैल भी टंग रहा है।

और साइड में उसके खिड़कियां लगी है और फूल भी लटक रहे हैं।

यह एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है।

यह एक बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है।

ऊपर में अलग अलग रंग के गुभ्भारे लगे हुए हैं।

और साइड में ढोल बज रहे हैं।

यह बहुत अच्छी जगह है यहां पर इन्वेंटर बहुत सारे रखे हैं।

टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा है।

और एक मशीन भी रखी है मशीन के स्विच बोर्ड में लगे हैं।

और एक सुफेद कपडे पहना व्यक्ति दुकान की तरफ देख रहा--

ये एक बहुत अच्छा बारात घर है जिसमें अंदर ऊपर की साइड पंखे लगे है।

कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ पुरुष भी बैठे हैं और इसमें थमले भी है जिनपे--

एक आदमी अलग खड़ा है जिसने पीले कलर की बेनी है और सिर पे हेलमेट है।